ये चित्र मा जी हम देख सकदु की हम त एक छोटी छागो कुटिया करं बणी दिखेण लगीं जैका ओर पोर हम त डोकरा दिखेण लग्यां।

फुंडे मा जी हम तें एक ढोखरू दिखेण लग्युं जें मा जी हम तें हरयाँ भरयां डालन उग्यां दिखेण लग्यां पार हम तें गाड बग्दा दिखेण लगीं।